यह एक मंदिर है यह बहोत ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है।

घर के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हैं अंदर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

एक पीछे से रेड लाइट जल रही है।

यहां पे एक्सरसाइज करने की चीज़ें बनी हुई हैं।

लैब जांच है यहां पे जांच होती है।

यहा पे एक महिला खड़ी है और यहां पे एक लेडिज डॉक्टर बैठी और यहां पे जेंट्स --

यहां पर बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा है और अंदर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है अंदर--

यहां पे तरह तरह के छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

ट्रेन की पटरी की बीच में एक गमला रखा हुआ है।

यह लखनऊ के हजरतगंज में उपस्थित है।

एक जगह है और यह एक चौराहा के टाइप में हैं।

और यहां पे लाइटें लगी हुएं हैं।

मूर्ति बनी हुई है और बहोत बड़ी मूर्ति बनी है।

यहां पे इधर उधर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारी सीटें हैं।

ये बहुत से लोग सब तरह तरह की चीजें खेलते हैं।

यहां ये एक तोप खड़ा हुआ है।

पे तरह-तरह के पेड़ हैं खजूर का पेड़ है घास भी लगी हुई है।

यहां पे कोई हार्डवेयर भी है और यहां पे बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है।

यहां पे लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

यहां पे कुछ चिप्स हैं कुछ क चॉकलेट्स हैं।

एक गोले के अंदर घेरे में खड़े हुए हैं।

और ये ग्रीन कलर से स शश शिप्रिया अपार्टमेंट लिखा हुआ है।

एथरो बास्केट ग्रोसरी ए_वाय योर डोरस्टेप लिखा हुआ है।

पेड्स भी लगे हुए हैं।

एक झूमर लटक रहा है।